यह मकान देखने मे बहुत पुराना है ऊपर नीला आकाश है एण्ड सामने मे बहुत बड़ी सी --

अँड बगल मे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखे जा सकते है कुछ पेड़ बड़े है और कुछ पेड़ छोटे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा और पुराना एक मकबरा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे है ऊपर ब्लू कलर का शॉटर लगा हुआ देखा जा सकता है।

यह एक रेलवे प्लेटफ़ॉर्म का इमेज है।